और ये बिल्कुल शहर के बीचो-बीच में है।

बहुत सुंदर लग रहा है।

काफी अच्छा नाम है।

और ये बस स्टैंड पे अपने मोटर साइकिल से इस्पे कुछ करेगा और इसको आज छोड़ने आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और बादल का मोसम छाया हुआ लग रहा है बस स्टैंड पे दो बसे खड़ी हैं।

ये नमो बुद्धाय जय भीम जय भारत और नमो बुद्धाय तथागत भगवान बुद्ध का है ।

और काफ़ी अच्छा है यह लड़का काफ़ी स्मार्ट दिख रहा है और यह लगता है कहीं बाहर - उअर पढ़ता है अभी आया है तो फ़ोटो - ओटो खिंचवा रहा है सेल्फी ले रहा है गाँव के परिवेष को दिखा रहा है ।

और इसका गाँव बहुत अच्छा है सनसाधन पूर्ण है लाइट उट का व्य्वस्ठा है।